ये कोई शादी का सीन दिख रहा हैं जहां पर--

और बहोत खूबसूरत पेड़ भीं लगे हुए हैं।

ये एक रोड मार्केट दिख रहा है।

ये एक ब्रिज का सीन दिख रहा है।

जो कि बहुत बड़ी है।

बहुत सारी साइकिलें दिखाई दे रही हैं।

पिलर भी नज़र आ रहा है बड़ा गेट भी नज़र आ रहा है।

बिल्डिंग में लिखा है वैदिक चिकित्सा संस्थान --

एक लड़का भी खड़ा नजर आ रहा है।

और कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

एक ट्रेन की पटरी खाली है।

और एक पे ट्रेन आती दिखाई दे रही है।

ऊपर ब्रिज भी बना हुआ है।

पर कोई लोग नजर नहीं आ रहे--

पीला हरा कलर पुता हुआ है।

लाइटें भी लगी हुई हैं जो कि जल रही हैं।

ये कोई रोड दिख रहा है जो कि साफ सुथरा पड़ा है पक्का रोड बना है।

और डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

ये एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है।

ठेले ढके हुए हैं कुछ खुले हुए हैं।

कुछ लोग बैठे हुए हैं।

जिसमें शादी हो रही है।

जो कि बहुत आलिशान दिख रहा है।

सोफे दिख रहे हैं जो कि बहुत महंगे नजर आ रहे हैं।

ये एक नर्सरी का सीन दिख रहा है।

दो मेहराब दिख रहे हैं।

या फिर एक घूमने की जगह भी लग रही है।

ये एक गार्डन दिख रहा है।

बैलून भी दिख रहे हैं जो कि हार्ट शेप में है।

और लाइटें भी जल रही हैं।

जो कि बहोत खूबसूरत है।

यह एक ग्राउंड नजर आ रहा है।